यहां पे एक विंडो ए_सी दिख रहा है।

एक लाल कलर का तुछ डब्बे जैसा भी दिखाई दे रहा है।

कोई कोई खिड़तीयों में कपड़े सूखते हुए दिख रहे है तो कोई कोई में--

अच्छी तरह से डिजाइन दी गई हुई टाइल्सें लगी हुई है।